जे एक बड़का घर भर छे साथ में पंखा वनखा सब लागल छे।

यहां पर एक तरह के दिखा रहल छे आदमी सबके हाथ में ऐथि छे ढोलक छे।